और बिल्डिंग्स के बाहर दो गाड़ी भी पार्क किया हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग्स बाहर में एक बड़ा रास्ता भी है।

और साथ में पेड़ पौधे सब भी लगाया हुआ है और बिल्डिंग के बाहर मनुष्य लोग भी है।

इस फोटो में बड़ा सा मंदिर दिख रही है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा समुद्र दिखाई दे रहा है।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

और ऊपर में लाइट सब भी जल के है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

फेंसिंग भी लगाया हुआ है और नीचे में बहुत सारे छोटे छोटे घास सब भी हैं।

और ऊपर मे लाइट भी जला हुआ है।

और रूम के अंदर में एक दरवाजा भी लगाया हुआ--

और स्टेडियम के पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ सब भी हैं।

और दुकानें में बहुत सारे लाइट सब भी जला हुआ है।

और साइड में पत्थर ये सब भी दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में लाइट सब भी जला हुआ है और फैन भी टंगाया हुआ है।

और ट्रेन में बहोत सारे खिड़कियां सब भी हैं।